हमें यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का हमें यहाँ पर बल्ब दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कप दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर का मोबाइल फोन दिखाई दे रहे है दो--

हमें यहां पर स्टील के पाइप दिख रहे है हमें यहां पर बीचो-बीच पेड़ भी दिख रहे है हमें यहां पर सफ़ेद आसमान--